साफ सुथरा और सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ पर मुझे कुछ रेलिग भी लगी हुई दि--

यह तस्वीर मैं मुझे थोड़ा-थोड़ा जंगल दिखाई दे रहा हैं जंगल में मुझे बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पे मिटीओ का कलर मुझे ग्रीन दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं बहुत ही--